शॉप आप देख सकते हैं शॉप के अंदर बहुत सारे जो है बिग --

और एक तरफ लेडिस का जो आइटम है --

पे है मीट काट के अलग रखा गया है।

ये एक रूम के अंदर की तस्वीरे है यहाँ आप देख --

ये तस्वीर एक एक पार्क की हैऔर आप पार्क देख सकते हैं।

उधर साइड में एक वाटर पार्क बना हुआ है जिसमें पानी भरा हुआ है।

जा रहे हैं कुछ बाहर खड़े हैं और यहां फोटो भी खिचवा रहे हैं।

वो खड़े हुए हैं जो यहाँ लोग आए उनकी व्हीकल्स हैं।

म्यूजिक सिस्टम लगे हुए हैं और बहुत ही प्यारा घर --

जिन से परिक्रमा करने के लिए यहाँ गांव के लोग आए हुए हैं और बहुत भारी भीड़ है।

दो सिग्नल की मुंह बने हुए है।

ये तस्वीर एक आंगनबाड़ी की है आप यहाँ देख सकते है बहुत सरे जो है बच्चे छोटे --

इनका जो है बोर्ड बहोत सारे यहाँ बोर्ड लगे हुए हैं और ये हॉस्पिटल बहोत ही बड़ा --

एक वेट मशीन रखी --

और उसके साइड में एक क्लिनिक खुला हुआ है जो की --